ब्लू कलर की लाइटें जली हुई है एक लड़का बैठा हुआ है अपना फोटोशूट करवा रहा है।

खड़ा है छतरी के अंदर और पास में कुछ तिरपाल दिखाई दे रहा है कुछ जंगल दिखाई दे रहा है।

और कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं दीवार पे और कुछ--

कुछ मसाले हैं कुछ चिप्स हैं कुछ भुजिये हैं और कुछ नटकरकर हैं।

यह एक गगन ऑटो इलेक्ट्रिक वर्कशॉप है नोट हमारे यहां पर सेल्फ --

और कुछ दुकानें यहां पे खुली हैं कुछ दुकानें बंद हैं आगे कांच लगे हुए हैं बड़े बड़े।

घर बैठे ऑर्डर करें भारत के किसी भी शहर में कुछ आगे लिखा हुआ है ऊपर एक डिश लगी हुई हैं।

और पड़े हुए हैं और आस पास में कुछ सामान रखा हुआ है और एक मोटर भी रखी हुई है।

ये वैसे स्कूल हैं स्कूल में काफी लड़कियां और छोटे बच्चे खड़े हैं और परेड कर रहे हैं।

और धरिया बिछाईं हुईं है एक मेम खड़ी हुई हैं कुर्सी लगाई हुई हैं और आस पास में --

चाचीडियां भी लगीं हुईं हैं और सोलर प्लांट की प्लेटें भी ऊपर लगी हुईं हैं कुछ आसपास में पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और दो बाईकें खड़ी है और पीछे काफी सारी लाईटें भी जल रही है।

पेंट इलेक्ट्रिक फिटिंग और पानी फिटिंग प्लाईवुड दरवाजे टूल्स का सामान मिलता है।

और इसके अंदर काफी सारी पलाएं पड़ी प्लाई पड़ी हैं और एक कूलर लगा हुआ है और आसपास में कुछ लक्कड़ भी पड़े हुए हैं।

भी सारा अलग अलग स तरह के समान पड़े हुए हैं और कांच कांच के --

मेमोरियल फॉरएवर है और पास में एक रोड है और रोड के पास में एक बोट लगा हुआ है और एक तरफ कुछ मकान बने हुए हैं।

ये एक दुकान हैं एक दुकान बंद हैं आ एक खुली है उसके अंदर एक बाइक खड़ी हैं।

शोरूम है इस पे सीढ़ियां अपने आप चलने वाली लगी हुई हैं और एक छोटी गाड़ी हैं।

और सीलिंग हो रखी है और कुछ लाइटें भी जल रही है दो पर्दे पड़े हुए हैं।

ये एक केंद्रीय पुस्तकालय हैं इसके आस पास में ग्रीले लगी हुई हैं एक बाइक खड़ी है।

ये एक गेट हैं गेट पे काफी सारी मूर्तियां बनी हुई हैं वो जो मिट्टी की हैं।

ये एक किताबों की दुकान है इसमें काफी सारी किताबें रखी हुई हैं और कुछ--

एक बाइक भी दिखाई दे रही हैं और कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं और ऊपर कुछ तार भी लगे हुए हैं।